इस इमेज में सामने देखिएगा जहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है नीचे एक वॉच मैन में खड़ा है और ऊपर फोर्ट लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज मे सामने देखियेगा यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और ऊपर देखिएगा तीन चार खिड़की खुली हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखियेगा यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखियेगा साइड में कुर्सी भी नजर सीढ़ीया भी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर लकड़ियों का सामान दिखाई दे रहा है सामने देखिएगा डमरू भी नज़र आ रहा है।

इस इमेज में देखियेगा सामने यहाँ पर एक नर्सरी दिखाई दे रही हैं जहाँ पर देखियेगा कई सारे पोधै लागे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है जहां पर एक मेट्रो ट्रेन खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और बाहर छोटा सा पार्क है जहां पर बैठने की बेंचेज लगी हुई नज़र आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक घड़ी की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर शूटकेश में देखिएगा हाथ में पहनने की घड़ियां नजर आ रही है।

इस इमेज़ में सामने देखिएगा यहां पर एक स्टेज दिखाई दे रहा हैं बीच में देखिए कि गजानन जी की मूर्ति भी लगी हुई नजर आ रही हैं।

इस इमेज में सामने देखियेगा यहां पर एक शोरूम दिखाई दे रहा है जहां पर देखियेगा यू_एस पोलो अस्सी लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा केक दिखाई दे रहा है उसके ऊपर देखिएगा चॉकलेट बिस्किट का डेकोरेशन नजर आ रहा है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर देखिये ये दो दरवाजे और सोफे लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा सामने यहां पर एक सड़क के किनारे कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है और यहां पर एक सफेद कार भी खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है और बड़ी की बॉल के ऊपर एक स्टैचू भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक र गैरेज दिखाई दे रहा है जहां पर देखिएगा दो लड़के यहां पर काम करते नजर आ रहे हैं।

इमेज में देखिएगा यहां पर एक छोटा सा प्यारा सा बंगला दिखाई दे रहा है और यहां पर देखिएगा मंदिर भी बना नजर आ रहा है।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

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है और साइड में यहां पर बैठने की बेंचेज भी नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर एक पुराना सा खंडहर दिखाई दे रहे है जहां पर कई सारे दरवाजे नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर कई सारी दुकानें दिखाई दे रहीं है और यहां पर देखिएगा सीढ़ियों पर लोग चढ़ते उतरते नजर आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा जहां पर एक कुछ इमारतें दिखाई दे रहीं है और यहां पर नीचे देखिएगा लाइन से कारें कड़ी नजर आ रही है।